हरे भरे टाइल्स लगे हुए हैं और जीने है हरे कलर में बाहर एक कुर्सी रखी हुई है नीचे एक पिज्जा नाम के दुकान है।

और बेंच बिछी हुई है पानी रखा हुआ है मोटर्स --

सामने जिराफ है राइट साइड कुछ हरे खंभे और लकड़ियां रखी हैं हरी वाली मेरे ख्याल से और कांच के अंदर दिख रहा है वो जिराफ।

रात का टाइम है पेट्रोल पंप का एरिया है।